इसमें एक गाड़ी है बगल में रोड है।

पर्दा का रंग लाल है ।

यह फल का दुकान है बहोत सारा फल रखा हुआ है।

इसमें आसमान दिखाई दे रहा है घर दिखाई दे रहा है।